यहां पे बहोत सारा सामान--

यहां पे बहोत सारी बिल्डिंग्स है।

बीयर की दुकान है यहां पे अंदर बहुत सारे --

और अंदर बहोत सारे शेल्फ में--

दिख रहे हैं और यहां पे बहुत सारे लोग भी है।

बड़ा सा पेट्रोल पंप दिख रहा है।

यहां पे टेबलों पे बहुत सारी--

दिख रहा है। यहां पे एक लेडीज और एक बच्ची है।

होटलों दुकानें बहुत सारी यहां पे--

यहां नीचे मैट्स बिछाए गए है।

ये एक यहां पे लक्ष्य इंटरनेशनल एकाडमी की--

अंदर कुछ लोग हैं यहां पे रस्सीयों के बंडल है।